इनका जो ऊपर शटरिंग शटरिंग होता है लोहे का उसी को लिए जा रहे है गाड़ी मैं और एक व्यक्ति दो -दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। दो व्यक्ति घेर कर लिए जा रहे हैं।

जो प्लेन लैंड होती हैं मतलब ऊपर प्लान में चढ़ते हैं हेलिको एरोप्लेन में वही पर व्यक्ति खड़ा हुआ है।

हवाई अड्डा और महिला भी खड़ी हुई है और हेलिकॉप्ट प्लेन भी खड़ा हुआ है अभी यात्रीगण चढ़ भी चुके होंगे काफी --

ये एक गैलरी है गैलरी में कुछ अभी हमें फोटो नहीं दिखाई दे रही है।